हेलो गाइस यहाँ पे काफी लोग पार्क घूमने का सीन दिखाई दे रहा है ये बहुत ही जबरदस्त दिखाया हैं।

यहाँ कभी- भी हम लोग काफी ज़िंदा जबरजस्त देखने को मिल रहा है देख सकते है हाथी बहोत सारे--

माल बन रहा है और बहुत सारे ये भाई क्या जो कर रह है पता नहीं लेकिन यहाँ पे यहाँ अ काफी सारे लोग आए हुए है।